हम इस फोटो में यह देख सकते हैं कि यह रूम लॉक किया गया है और दरवाजे का कलर --

दो स्विच देख सकते हैं और एक ऐसी भी रखा गया है और लैपटॉप भी है जो ऑन हुआ है और कस्टमर कोई मौजूद नहीं है।

इस फोटो में हम दे सकते है कि एक बुद्धिस्ट गेट है और गेट में हम दे सकते हैं --

उसके बगल में एक होम डेकोरेशन शॉप को भी दिखाए गये हैं।

हम फोटो में दे सकते हैं कि यह कोई रिजॉर्ट है या कोई टूरिस्ट प्लेस है और फोटो में डो बच्चे बैठे हुए हैं।

नीले रंग का है और हम एक घर को भी दे सकते हैं जिसका दरवाजा का रंग--

वो उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है और ये बूढ़े और बूढ़ी को देखकर लग रहा है कि ये अपने समय का वेट कर रहे हैं।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

ये लॉकर है और फोटो में हम तीन सीट भी देख सकते हैं।

इस फोटो में हम पांच सोफा देख सकते हैं और बीच में एक टेबल भी देख सकते है यहाँ हम समान रख सकते है।

फोटो में हम दे सकते हैं कि ये कच्चा घर है और देखकर यह लग रहा है कि यह कोई होटल है और इधर हम देख सकते हैं कि--